कंपनी मे टिन भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

साइकिल बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी गाड़ियां --

दिखाई दे रहा है। यहां पर बहोत सारी--